ये एक रोड की फोटो दिखाई दे रही है।

ये किसी लड़के की तस्वीर दिखाई दे रही है जो की छत पे खड़ा होकर फोटो लेता हुआ नजर आ रहा है।

ये किसी योगा क्लासेस की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे लड़के और लड़कियां काले कलर के मैट पे बैठकर --

पेट्रोल पंप में कुछ कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक नर्सरी की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पे एक डबल बेड रखा है जिस पे दो पिलो रखे हैं।

और सामने की और पहाड़ का नजारा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

यहां पे बहौत सारे आदमी है जो जिम की मशीनों पे एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे मशीने और औजार भी रखी हुई है।

ये एक मंदिर की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर हजारे के पुल से --